एक ए मंदिर हे जेमे पूजा करे बर रास्ता में रेलिंग भी लगिस हे एक ग्राउंड में भी एक टाइल्स भी लगिस हे जेमे अच्छा से बिच-बिच में घास भी हे।

इसमें स लईका मन खिलौने ले हे बर आथे हर प्रकार के एमा खिलौना लगिस है और दूकान में लाइट भी अच्छा से लगिस है।

ये नदी हे नदी के किनारे एक मंच हे मंच से सीधा उपर में एक सड़क बनिस् हे जिमे गाड़ी चलथे।

यहाँ एक बैंक हे और बैंक के किनारे में एक सरकारी बिल्डिंग भी हे जे जे जेकर सामने में बहोत अच्छा पेड़-पौधा लगिस--

जो मंदिर हे न ओकर अगल बगल में बहुत अच्छा घर भी है और सब लोग मंदिर में भी आथे।

ये एक किराना दूकान है किराना दूकान मे रेक के अंदर मे ये घरेलू सामान सब कुछ मिलता है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हे बिल्डिंग के बाहर मे पार्किंग जैसे गली-गली जैसे जिमे टाइल्स लगिस--